और ये कितने अच्छे मंदिर लग रहे हैं काफी सारे मंदिर हैं यार यहाँ पे तो।

कितना अच्छा डांस कर रही है ये लड़की और इसने कितने अच्छे कलर के कपड़े पहन रखे हैं।

और बाबा साहब की तस्वीर भी लग रही है।

और इसमे लाइटें कितनी अच्छे तरीके से जल रही हैं ऐसा लग रहा है जैसे ग्राउंड में भाई दिन निकल रहा हो।

अरे भाई यह तो फूल है और कितना अच्छा लग रहा है यह फूल और इसकी कलियां कितनी अच्छी लग रही है वाइट वाइट कलर की।

और इसके साइड में कितने अच्छी-अच्छी कलियां हो रही है कितना अच्छा लेंट डल रहा है।

और इसका गेट कितना अच्छा लग रहा है रेड कलर का।

हे भाई ये तो फल है कितने सारे फल हैं।

फूलों की माला बनाओ कितनी अच्छी लगती है माला फूलों की।

और कितना बड़ा समुंदर है।

और इसका बोर्ड कितना अच्छा है बानकर वाला।

चल आप समुंदर के पास खड़े हो ठंडी ठंडी हवा ले हो।

और इसमें तो भाई एसी भी लगी हुई है यार।

वाह भाई इतने अच्छे-अच्छे भाई गुलदस्ते रखे हैं यार।

कितने रंग बिरंगे भाई कितने प्यारे यार गुलदस्ते लग रहे हैं यार ये।

कितना वेट उठा रहा है यार ये लड़का बंदा यार इसकी बॉडी कितनी अच्छी होगी यार।